यह किसी विद्यालय का चित्र है जहाँ पर कुछ विद्य-विद्यार्थी बैठे हुए हैंऔर टीचर्स पोस्टर्स पकड़ कर खड़े हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल का चित्र है जहाँ पे एक खिड़की देखाई दे रहा है और खाट पर एक मरीज सोया हुआ है डाक्टर अपने मशीन से उसका इलाज कर रहा है बगल मे ही बहोत सरे तस्वीर दिखाई दे रहे है परदे भी है।